जो लोहे की हैं और काले रंग की हैं साथ ही हमे फर्श दिखाई दे रहा है जो भूरे रंग का है और बहुत ही साफ सुथरा दिखाई रहा है साथ ही दिवार दिखाई दे रही है जो बहुत ही साफ सुथरी और सफेद रंग की है पीछे की ओर कुछ खिड़कियॉ दिखाई दे रही जो कॉच की बनी हुई हैं।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

इस चित्र में हम देख सकते है कि हमें एक हॉल दिखाई दे रहा है जो बहुत ही सुन्दर लग रहा है और साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। इस हॉल के अंदर बहुत सारी कुर्सियां रखी गई है जो सफ़ेद और गोल्डन कलर --